यहाँ एक डिस्कोबार है। यहाँ पे सब बाहर से सभी लड़के लड़कियाँ आते है फिर डांस वगेरा करते है। यहाँ पे आनंद लेने आते है। आनंद लेने के रेस्टोरेंट का खाना पीना खाते हैं।

यह हमारे भारत की गऊँ माता है।

यह गुरद्वारा है। यहाँ पर जितने भी सरदार लोग होते हैं। आपने गुरद्वारे में आके गुरुगोबिंद साहिब की पूजा रखते हैं और खाने के लिए खाना भी मिलता है बीच में अपना यह भंडार भी करते हैं।

और जो भी जहाँ भी सवारी होती है। यह ऑटो वहाँ - वहाँ पर ले जाते हैं। उन्हें वहाँ छोड़ते हैं। उनसे खाया लेते हैं।

यह एक गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर सभी भक्त लोग गणेश जी की पूजा करने आते हैं।

सुबह शाम नियम से रहा करते हैं। जिम का प्रयोग करते हैं।